और सामने में एक घर दिख रहा है घर के साइड भी बहुत सारा आदमी है।

और सामने में सूरज भगवान का फोकस मार रहा है।

सामने में कुछ भी टेबल रखा गया है।

फोन पे का स्कैनर लगाया गया है।

सामने मे बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारा लेडीज है जो सफेद कलर का पहना हुआ है साड़ी।

और यहां पे सब कोई आदमी माक्स पहना हुआ है।

आ दो लेडिस काट रहा है बैगन।

पेड़ में भी पोस्टर लगाया गया है।

और इधर से पाइप पाइप भी दिख रहा है सामने मे --

बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा--

और यहां पे एक आदमी का हाथ में फोन है।

और यहां पे बहुत सारा फुल रखा गया है।

शैम्पू चुटकी मधु टीकू सुपारी केक सब चीज रखा गया है।

सामने बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

और यहां पे एक लोहा का सामान लगाए गए हैं।